यहाँ पर कुछ मकान बनी हुए हैं जिन पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं बोर्ड का रंग लाल सेद और कथ्थई --

पत्थर बने रखे हुए हैं जिन पर कई आकृतियां बन रही हैंपत्थर का रंग हल्का सा पीला और थोड़ा सा लाल है और नीचे फर्श भी है जिसका रंग --